टेबल ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है और चेयर्स स्किन कलर में दिखाई दे रहा है।

पानी बोतल दिखाई दे रहा है टेबल दिखाई दे रहा है।

उसका बाद सोलो टेप दिखाई दे रहा हैं।

उसका यहां का दीवार ब्लैक एंड व्हाइट कलर में है।

बरा बरा दिखाई दे रहा है और पेर दिखाई दे रहा है।

सामने बहुत बड़ा पानी टंकी दिखाई दे रहा--

पत्थर दिखाई दे रहे हैं और दूर मे पहाड़ दिखाई दे रहा है।

बल्ब दिखाई दे रहा है चेयर दिखाई दे रहा है।

ये एक मछली बाजार है यहां में हमको आदमी लोग दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रहे लाइट दिखाई दे रहे--

हमें एक लड़का सेल्फी लेने वाला दिखाई दे रहा है।

लाल ऑरेंज कलर का गोला दिखाई दे रहा है।

फूल दिखाई दे रहा है और ये घर व्हाइट कलर में है।

आदमी जो सेम ड्रेस ब्ल्यू ड्रेस में है और वाइट मास्क में है।

बोतल दिखाई दे रहा है और चेयर दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रहे है और लाइट दिखाई दे रहा है।

एक दीवार है वो शीशा से बना हुआ उसका उसका आर पर में एक यलो कलर का दुकान दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रहा है बाल तीन दिखाई दे रहा है।